ये पहाड़ी इलाका है। लोग यहां होलीडेज में आते हैं घूमने-फिरने चिल मस्ती करने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ बोहोत अच्छी जगह है। बोहोत खूबसूरत जगह है।